यह एक जीम की पिक्चर है इसमें तीन लोग वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं।

वैसे देखने में साफ सुथरा है अच्छा लग रहा है।

यह कोई क्लास रूम है जिसमें बच्चे पढ़ लिख रहे हैं।

अंदर में कुछ अनोखे समान है और कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं।

डिम है जो देखने में साफ सुथरा और सुंदर नजर आ रहा है।

यह एक बच्चों के खिलौने के दुकान है जिसमें अनेक प्रकार के खिलौने रखे हुए हैं।

सुंदर फेस हो जाता है अच्छा लग रहा है बहोत बढ़िया--

अच्छी लग रही है जिसमें पानी बह रहे हैं बच्चे इसमें मस्ती कर रहे हैं।

जिसमें लोग वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं और ये भाई साहब तो देखो--

यह पिक्चर तो एक जिम की है जिसमें एक वर्कआउट करने वाला बॉल है।

यह पिक्चर जिम की है और ये--

प्रक्रिया कर रहा है और साइड में और गाड़ी रखी हुई हैं।

यह पिक्चर तो कोई मेला के है।

हिरनस बने हुए है या फिर कोई खड़े हुए है जो ओरिजिनल भी हो सकते है ये --

यह एक ज्वेलरी शॉप हैं जिसके आगे दो मोटरसाइकल और एक रिक्शा सवारी गाड़ी खड़ी हुई हैं और एक व्यक्ति --

चित्र लगता है यहां ये अच्छी लग रही है।